पीछे बहोत सारे फूल्स हैं और बहुत सारे लोग भी उसमें हैं खड़े।

यह फर्स्ट ट्वाइ फर्स्ट चॉइस मल्टी ब्रांड का वर्कशॉप है माई टी_वी_एस करके।

पीछे ग्रीन स्मॉल पेड़ भी दिख रहे है।

ये किसी हॉस्पिटल की पिक है जिसमें एक फीमेल जनरल वार्ड दिखाया गया है।

इस वार्ड में एक बेड लगा हुआ है।

और यह एक चर्च के जैसा लग रहा है।

यह एक पोल्ट्री फॉर्म है जिसमें कई बहुत सारे देसी मुर्गियां रखे हुए।